बगल मे एक चेयर भी खाली हैं ऊपर में झूमर लटके हैं।

एक बिल्डिंग हे बिल्डिंग के नीचे में नंगर पंचायत के एक बोर्ड लगे हे जेमा बच्चा के विकास के बारे में बतात हे एक बाइक हे एक इंसान चलात हुए जात हे।